तार जाता हुआ दिख रहा है ऊपर की ओरपूरे मे हरियाली दिख रही हैऔर मकान भी बने हुए दिख रहे हैं पीछे।

पेड़ दिख रहे है। बीच में से टाइल्स का वो रस्ता जा रहा है।

अंदर शोरूम दिख रहा है दो डमी खड़े हुए है एक लड़का एक लड़की बाहर दो कारे खड़ी हुई है कांच लगा हुआ है अंदर जाने के लिए गेट है।